और इसके पीछे भी ग्रीन ग्रीन कलर के पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है और उसके साइड में घास भी लगी हुई है जो कि--

आमने कैफे जैसा दिखाई दे रहा हेगा कैफे या फिर कोई रेस्टोरेंट या फिर होटल का फोटो हैं ।

मेरे सामने प्यूम का एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे काफी --

यहाँ पे काफी ज्यादा टी-शर्ट वगैरह लगी हुई दिखाई दे रही है जो की टी-शर्ट येलो और ब्लू कलर की यहाँ पर दिखाई दे रही है।

ऐसा लग रहा है यहां पूमा कंपनी की टी शर्टस और शर्टस बनाने का काम किया जाता है एयगा जो की एक लाइन से यहां पे टंगी--

हरे-हरे पेड़ पौधें भी लगे हुए दिखाई दे रहे हैं पीछे साइड में।

और दो पेड़ है जो कि यहां पर दिखाई दे रहा है। शायद रास्ता निकल रहा है पीछे साइड में और यहां पर जो घास-वास है ऐसा लग रहा है।

ऐसा लग रहा है एक में ब्लू कलर रखा हुआ है एक में ब्लू और पिंक मिक्स है और एक में मल्टी कलर है जो कि --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

फसल देख के क्लियर तो नही हो रहा है की कौन सी फसल है लेकिन एक आदमी है जो कि यहाँ पे बेठा है और खेती का काम कर रहा है।

आ इधर ही पेड़ भी लगा है जो कि ट्रैक्टर के ऊपर है और --

सामने एक स्कूटी रखी हुई दिखाई दे रही है स्कूटी के बाहर तीन गिफ्ट बॉक्स रखे हुए दिखाई दे रहे हैं ।

जो कि सबके फेस एक ही साइड दिखाई दे रहे हैं ऐसा लग रहा है--

टेंट के बाहर में भी कुर्सीया रखी हुई है और यहां पे जो ज्यादातर डेकोरेशन है उसका कलर रेड और पिंक में ही दिखाई दे रहा है।

मेरे सामने एक लड़का दिखाई दे रहा है जिसने ब्लैक कलर की शेरवानी और येलो कलर का दुपट्टा लिया हुआ है।

यहाँ पे बलूनस भी रखे लगे हुए हैं जो कि व्हाइट ग्रीन ब्लू और रेड कलर के बलून यहाँ पे लटके हुए हैं।

ऐसा लग रहा है जैसे ये रेस्टोरेंट कैफै में से किसी एक का है --

मुझे सामने एक बस दिखाई दे रही है जिसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है लेकिन ये क्या है वो क्लियर नहीं है कोच दिखाई दे रहा है जोकि इस बस के ऊपर लिखा हुआ है।

मुझे सामने एक कंप्यूटर रखे हुए दिखाई दे रहे है ऐसा लग रहा है जेसे ये किसी ऑफिस की फोटो है यहाँ पे कंप्यूटर रखे हुए है दो कुर्सियां रखी हुई है ब्लू कलर की--

इसके बाहर में एक राउंड है जो काफी ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा है इस पर घास वगैरहा भी उगी हुई दिखाई दे रही है।

सामने एक आदमी दिखाई दे रहा है जो की पानी क्रॉस करते हुए पत्थरों के सहारे जाते हुए दिखाई दे रहा है एसा लग रहा है--

ये आदमी पत्थरों के ऊपर खड़े होके रा पार करने की कोशिश कर रहा है।

सामने एक आदमी टेबल पे बेठा हुआ दिखाई दे रहा है और येजो कुद्स टेबल और कुड्सिया यहा पे रखी हुई है वो किसी फंक्शन के लिए यहा पे रखी हुई है।

ये आदमी किसी फंक्शन में बैठा हुआ दिखाई दे रहा है इन इसने ब्लेज़र पहन रखा है --

और यहाँ पीछे में कुछ लोग काल जाते हुए अपना काम करते हुए भीं दिखाई दे रहें--

वो जो सामने एक भवन दिखाई दे रहा है भवन के बाहर पेड़ पोधे लगे हुए दिखाई दे रहे है लाइट भी यहा पे लगी हुई है जोकि--

सामने कुच्छ होता हुआ नजर आ रहा है यहा पे डिस्को लाइट और एक स्टेज है जिसके उपर डिस्कोलाइट और नार्मल लाइट लगी हुई दिखाई दे रही है।

सामने लोगों की भीड़ काफी ज्यादा दिखाई दे रही है यहां पे काफी ज्यादा भीड़ है ऐसा लग रहा है ये सभी किसी मंदिर में आए हैं।

सामने ऐसा लग रहा है जैसै कोई मंदिर है जो कि व्हाइट कलर का और इधर साइड में जो मंदिर है वो ऐसा लग रहा--

इन यहाँ पे जो लोग हैं वो कुर्सी पे बैठे है खाना खा रहे है शायद।

इनके साथ में एक औरत हैं जो कि शायद इन्हें योगा वगैरह सीखा रही है --

और बाकी जो बच्चे हैं वो रथ को देख के कॉपी कर रहे है योगा करने की कोशिश --

इसके पीछे डेकोरेशन किया गया है जो काफ अच्छा डेकोरेशन है पिंक और वाइट कलर के फ्लावर्स वगेरा यहा पे लगा के रखे गये है।

और ये जो फोटो है वो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी वेडिंग की --

सामने काफी अच्छा मोसम दिखाई दे रहा है मोसम जो है वो लाल लाल सा हल्का हल्का ऑरेंज ऑरेंज हल्का हल्का वाइट वाइट दिखाई देरा है।

लोकेशन ही ऐसा लग रहा है पानी है नीचे और उसके ऊपर आस पास--

आधा काम और बाकी है जिसे वो कंटिन्यू कर रहे हैं और ये जो घर बना रहे हैं इसे बनाने के लिए यहां पे दो तीन मजदूर हैं।

यहाँं पर दस-बारह भुट्टे जैसे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

और ये काफी बड़ी हुई बड़ी दिखाए दे रही है उसके ऊपर एक पेड़ लगा हुआ हेगा और ये--

हम्म जो जगह है वो ऐसा लग रहा है कि किसी की घर की विड फ़ोटो है वीडियो हैं जो कि --

सामने एक रेस्टोरेंट या होटल दिखाई दे रहा है यहाँं पे लाइटिंग वगैरह लगी हुई है बॉम्ब व्हाइट कलर की --

यहाँं पे सोफ़े वैगरह रखे हुए है टेबल और कुर्सियाँं यहाँं पे रखी हुई दिखाई दे रही हैं।

हॉस्पिटल काफी बड़ा है हॉस्पिटल के बाहर मल्टी हॉस्पिटल जो है येलो कलर से पैंट हुआ है।

यहाँं पे कीड़े काफी ज्यादा क्वानटिटी में रखे हुए है जो कि ऐसा लग रहा है पन्नी के अंदर रखे हुए है और --